सामने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है।

जिसमें एक व्यक्ति कपड़े लगा रहा है।

सामने शीशे के गेट लगे हुए हैं।

बाहर काउंटर पर लाल रंग का बैनर भी लगा हुआ है बाहर एक व्यक्ति भी खड़ा है।

जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।